यहां पर एक बड़ा हाल है जो ऊपर से पूरा ही व्हाइट कलर का--

यहां पर एक लोहे के बहुत सारे रिंग्स और सरिए रखे हुए हैं और दो व्यक्ति इनसे कुछ टेबल --

और जिम पर कुछ मालाएं भी चढ़ी हुई है।

अलमारियों में बहोत सारा सामान रखा है बहोत सी दवाईयां रखी है।

कुछ हैंगर्स में भी यहां कपड़े टंगे हुए हैं।

फ्रिज कंटेनर रखा है जिसके ऊपर कुछ बिसलेरी की बॉटल्स रखी हुई है।

आसपास बहोत से पेड़ लगे हुए हैं यहां पर।

कुछ छोटे पौधे भी लगे हैं जिसमें सफेद कलर के फूल लगे हुए हैं।

यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है टेबल पर बहोत से रेड कलर के अग्नि शामक यंत्र रखे हैं।

ये जहाँ पर खड़े हैं वो हाल पूरा ही व्हाइट कलर का है वहाँ पर बहोत सी मशीनें भी रखी हैं।

यहां पर एक तालाब है छोटा जिसमें पानी भरा है।

एक व्यक्ति तालाब के किनार पर बैठे हैं।

बहुत सारे टीन सेट के व्हाइट और ब्लू कलर के लगे हैं ऊपर की तरफ लाइट लगी है।

यहां पर एक घर है जो व्हाईट और लाइट येलो कलर --

सामने की तरफ यहाँ पर एक ब्लू कलर का पोस्टर लगा--

यह स्टेशनरी का समान है जिसमें पेन पेंसिल --

साइड में एक घर है जिस पर एक दीवार रेड कलर से पेंट की गई है।

और ये डिजाइनो में कुछ बड़ी डिजाइंस --

टीन शेड भी यहां पर लगा हुआ है कुछ लोग अंदर से बाहर आ रहे है।

ड्राइंग बुक में ड्राइंग बना रहे हैं आसपास यहां पर बहोत से लोग खड़े हैं।

और यहां रेड कलर से आरती बुक --

वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है।

पाइप से इसका कनेक्शन किया गया है और इसमें--

यहाँ पर एक रूम है और रूम के अंदर एक ऑफिस बना हुआ है।

और पीछे की तरफ बॉउंड्री वॉल बनी है जहां पर बड़े पेड़ भी पीछे साइड मे लगे हुएं हैं।

नदी के पास में कुछ घास और छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।